यह एक मैदान की इमेज है जो कि पूरा ओपन है और आइट साइड पेड़ लगे हुए है बी नीचे घास लगी हुई है और उसमे कुछ बहुत सारे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए है बी --

ये एक सब्-जी दुकान की पिक है जिसमे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं और जैसे गाजर है।

ककड़ी है शिमला मिर्च भिंडी भट्टे मिर्च बड्ड बत्ती धनिया लाल मिर्च सब अलग-अलग प्रकार की सब्जियां रखी हुई है।

जिसमे प-फिरोजी कलर में परदे लगे हुए है और बस में पिछे एक सीट के नीचे कुछ रेड कलर का सामान रखा हुआ है।

ये फल फूल की दुकान है इसमें एक ठेली पर कुछ फल रखे हुए हैं जैसे कि सेब है और तरबूज है भी कुछ ईंटे रखी हुईं है पॉलिथीन है और --

टी शर्ट पेन शर्ट पहनी हुई है और जो कुछ बढ़ के कर रहा है जिसने सामने कुछ कोफिया रखी हुई है और साइड से सीढ़िया गई हुई है ऊपर लाइट ग।--

ये किसी एक मेले की इमेज है जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और बहुत सारी दुकाने लगी हुई हैं।

ये डेयरी की शॉप है जहां पे बाहर बस स्कूटी ऑटो कुछ बाइक खड़ी हुई है| बहोत सारे लोग खड़े हुए है ।

जो की समान लिया है| साइड मे और भी दुकाने है| बाहर पूरी पल्प लगे हुए है ।

पिक में डबल फ्लोर की बिल्डिंग हैं।

कोई क्लास की इमेज है जहाँ पर एक हॉल है जिसमें बहोत सारी लेडिज है जिन्होंने--

ये एक यह एक फंक्शन की इमेज है जिसमें कुछ लड़कियाँ जिन्होंने डांस में काए पार्टिसिपेट की है उन्होंने एक ही कलर में ये कास्टूम पहनी हुई है।